बड़े-बड़े पेड़ लगे हुए हैं इलेक्ट्रीसिटी के खम्भे लगे हुए हैं।

अ फर्स्ट फ्लोर पर बालकनी में कोई खड़ा हुआ हे दरवाजे और खिड़कियाँ लगे हुए हें।

मिर्च रखी हैं गोभी रखी हुई हैं ड्रम स्टीक्स रखी हुई हैं |

इमेज में दुकान है दुकान के अंदर एक लड़का है दूसरा लड़का गेट से बाहर आ रहा है ।

दुकान के ऊपर एक बोर्ड लिखा है उस पर सरस्वती सदन लिखा है रेड कलर से।

अ बहुत सारे केले रखे हुए हैं ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं फ्रूट्स रखे हुए --

अ चिकेन मसाले के पैकेट्स है मीट मसाले के पैकेट्स है फिश मसाले के पैकेट्स है।

इमेज में बहुत सारे टॉयज रखे हुए है टॉयज रेक्स में रखे हुए हैं।

अअ कुछ विंडोस बनी हुई हैं।

इमेज में एक दुकान है दुकान पर अमूल का बोर्ड लगा हुआ है।

अ चेयरस रखी हैं | एक कार खड़ी हुई हैं बाइक खड़ी हैं साइकिल खड़ी हुई हैं |

अ सारा सामान होम डीकोर का है | एक बोर्ड पर ग्रीन कलर से होम डीकोर लिखा हुआ है |

अ पार्क मे कुछ लोग योगा कर रहे है योगा मेट्स लगी है।